की शॉप दिखाई दे रही जिसके बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें टिकटो का रेट लिखा हुआ है और उसके अंदर--

आ बड़े बड़े मेज पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके--

अ होटल्स हॉस्टल यह दिखाई दे रहा है जिसके बाहर पोस्टर भी लगे हुए हैं।

एक सिंगल बेड भी पड़ा हुआ है और दो विंडो भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पास में एक टेबल भी पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर सामान पड़ा हु--

यहां पे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर--

अ नी सैलून टेलन इन सैलूनों वाली के पोस्टर लग अ शीशा बड़ा सा लगा हुआ है और उसके बाहर --

हिरण भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और पास में--

बहुत सारा एक गार्डन दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक--

यहां पर हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहोत सारे टेडी बियर और बच्चों के खिलौने वगैरा गाड़ी वगैरा--

आइसक्रीम भरी होती है और बाहर बहुत अच्छे पोस्टर भी लगे हुए हैं और अंदर कुल्फी भी पड़ी हुई दिखाई --